इस इमेज में एक विद्यालय नजर आ रहा है विद्यालय के गेट का कलर पिंक है इसके ऊपर बहुत सारे अ छोटे-छोटे से पैम्फलेट नजर आ रहे हैं जो --

यहाँ पर एक ट्रॉली भी नजर आ रही हैं जिसका हैंडिल रेड कलर का है यहाँ पर बोहोत अलग-अलग वैराइटी का समान रखा नजर आ रहा है।

इस बिल्डिंग के सामने बहुत सारी जनता नज़र आ रही है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर कुछ लाईट्स भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में एक बोहत बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है मंदिर के ऊपर एक बैनर भी लगा नजर आ रहा है। मंदिर के बाहर कुछ बाइके भी खड़ी नजर आ--